यहां एक स्टेचू बना हुआ है स्टेचू का बाल ब्राउन कलर का है उसने एक रेड कलर का टी शर्ट पेहना हुआ है ब्लू कलर का जींस पेहना हुआ --

बहुत सारे पेड़ पौधे एक मोर हैं जो बैठा हुआ है।